कुछ बड़ा है गैस पर इधर भी ऊपर कपड़ा रखा गया है।

और और भी कलर है यहां पर बहुत सारी कुर्सी रखी हुई है।

ये एक कमरा है एक कमरे में लैपटॉप रखा हुआ है इधर एल_सी_डी लग रही है।

इधर बहुत सारे लड़के खड़े हैं इनमें लड़कियां भी है।